दुकान पे ढेर सारे तेल के बोटल रखे हैं बाहर एक लाल कलर की बाईक रखी हुई है।

साइड में एक लड़का खड़ा है जिसने येलो कलर का कुर्ता पहन रखा है। नीचे व्हाइट कलर का पैंट पहन रखा है और ब्लैक कलर का शूज पहन रखा है पिंक और व्हाइट में डेकोरेशन हो रखा है।

इस चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो खाना बना रहे हैं।

साइड में एक बस खड़ी है जो लाल कलर की है। आसमान नीला दिखाई दे रहा है। जमीन मिट्टी की है तो वो लाल दिखाई दे रही है और ढेर सारे स्ट्रीट लाइट लगे हैं।

चित्र में एक बड़ा सा मैदान दिया हुआ है जहाँं काफी सारे लड़कियां कुछ-कुछ दूरी पर बैठी हुई हैं। उन्होंने वाइट कलर का टी-शर्ट पहन रखा है और तिरंगे का दुप्पटा ले रखा है।

पीछे एक बोर्ड दिया है। जिस पर लिखा है किरीति योगा । साइड में जो दीवारे हैं उसका कलर है हरा और आजू-बाजू काफी बड़े-बड़े पेड़ हैं।